इस तस्वीर में हमें एक बहुत सुंदर सा मंदिर दिखाई दे रहा है।

राइट की दीवार पे बहुत सारा कॉस्मेटिक का सामान रखा हुआ भी नजर आ रहा है।

वाटर पार्क पर एक झूला लगा हुआ भी नजर आ रहा है।

वॉटर पार्क के साइड साइड में बोहोत सारे पेड़ लगे हुए नज़र आ रहे --

ऑफिस के अंदर टेबल और लैपटॉप आदि रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक छोटा सा ट्यूशन क्लास दिखाइए दे रहा है।

ग्राउंड में बहोत सारे बच्चे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं।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

इस तस्वीर में हमें एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है।

इस पत्तियों पर लोटस लगा हुआ नजर आ रहा है।

साइड में एक कूलर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पेपर के ऊपर दो गन्स रखी हुई थीं दिखाई दे रही।

साइड में कापी जैसा कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

शोरूम की दीवार पर बहोत सारे कपड़े पैकेट में रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीचे के हिस्से में छोटी छोटी दुकानें बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में हमें एक बहुत सुंदर सा नजारा दिखाया गया है।

बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए नजर आ रहे हैं।

दुकान के अंदर एक आदमी फोटो खींचता हुआ नजर आ रहा है।

नीचे की तरफ बहोत सारा रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

रेलिंग के ऊपर बहोत सारे बोर्ड और बैनर लगाए हुए हैं जिसमें चाऊमीन मोमोज छपे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें कार रिपेयरिंग का नजारा दिखाई दे रहा है।

दुकान के ऊपर एस_आर मोटर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है।

तस्वीर में हमे एक क्लासरूम के अंदर का नजारा दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारे बेंच रखेंगे दिखाई दे रही है।

बेंच के ऊपर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

दुकान के ऊपर मां वैष्णो मेडिकल स्टोर लिखा हुआ नजर आ रहा है।

जहां पर बहोत सारे लड़कों ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

इनके गेट को बहुत सुंदर मालों और रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया हुआ है।

जैसे लाल पीले नीले गमले एक के ऊपर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने की तरफ एक टेबल रखा है जिस पर सामान रखा हुआ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक पारंपरिक रथ यात्रा का दृश्य दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें ग्राउंड में बहोत सारे बच्चे योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में दुकान के बाहर का नजारा दिखाई दे रहा है।